और यहां पर कोई तकलीफ नहीं होता है यह तीन मंजिला कॉलेज है और यहां पर एक स्कॉर्पियो भी रखा गया है और यह देखने में बहुत ही अच्छा है।

खरीदारी और बिक्री दोनों कर रहे हैं और मंदिर बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है और यहां भीड़ भराका भी काफी ज्यादा हो गया है।